इस दृश्य में मुझे स्विमिंग पूल और पानी--

पेड़ पौधे लोग सीढ़ियां नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे शिमला का स्कैंडल प्वाइंट --